यख मा जी फूलों का झालर छन यखम कुछ तस्वीर छन भगवाना जी की लगीं पिछाड़ी फण हरयां भरयां डाला छन दिखेण लग्यां।

चित्र का अनुसार यख मा जी जु छा हम तें एक बड़ु बारिकु कमरा करा दिखेणु।